और यहाँ पर दुकान के बाहर दुकान का बोर्ड है यहाँ एक ड्राई कलीन होती है।

भगवान की प्रतिमा रखी है प्रतिमा के बाहर सुंदर चित्रकारी हो रही है और ऊपर छत पर त्रिपाल लगी है।